इमेज में एक टेबल पर चार वाइट कलर की प्लेट और एक वाइट बाउल रखा हुआ है | आ तीन प्लेट में बचा हुआ खाना रखा है |

इमेज में एक प्लेट पर कुछ लीचियां रखी हुई नजर आ रही हैं।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

एक जेन्ट्स खड़े है | जेन्ट्स के हाथों में चोट लगी हुई है | दुकान में बहोत सारी दवाइयाँ रखी हुई दिख रही हैं |

आ दीवार पर एक बड़ा-सा पोस्टर लगा हुआ है। ब्लैक और येलो कलर के बलून से डेकोरेशन किया है। पंखा लगा है। लाइट जल रही है।

आ पेड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं | पेड़ की पत्तियाँ हरे रंग की हैं |